अपने अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं।

यह एक छोटा सा सदाबहार का फूल है।

और कुछ दूर पर बहोत सारी फसल भी उगी हुई हैं।

जिनका रंग लाल पीला नीला और हरा है।

और इसका आधा टुकड़ा हाथ में ले रखा है।

और बच्चे अपना पूरा ध्यान लगा कर डांस की क्लास अटेंड कर रहे हैं।

कुछ व्यक्ति बैठकर खाना खा रहे हैं।

और इस कमरे में वाइट कलर का पेंट हुआ है।

और तीन व्यक्ति बीच में हैं और एक सबसे पीछे है।

कुछ व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं।

और एक व्यक्ति बाइक पर बैठा है।

इस जिम में अलग अलग प्रकार के अनेक गुब्बारे र लगे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी कुर्सियां रखी है।

इस दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक समान मिलता है।

और यहां लाइट भी लगी हुई है बोहोत बड़ी-सी लाइट ।

और ये देखने को मिल रहा है।

और यहां कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

यह एक पुराना कार्यालय घर है।

और एक बाइक के ऊपर एक आदमी बैठा है।

और यहां पर बहुत पुराना पेंट हो रहा है।

यह एक बहुत सुंदर सा कॉलेज है।